मुझे इस फोटो में ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मै कुछ पेड लगे हुए दिखाई दे रहे है जिसमे कुछ दिखाई दे रहा है आधा रोड लाल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक पार्लर दिखाई दे रहा है एक आदमी बाल कटवाते हुए दिखाई दे रहा है लाईटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है पंख लगे हुए दिखाई दे रहे है और तीन चार आदमी यह पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है।